रोड पर दिखाई दे रहा है। आस-पास दिखाई दे रहे है।

कार दिखाई दे रही है। कार का कलर ब्लैक और वाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ एक बड़ा सा बॉक्स टॉप पे दिखाई दे रहा है। इसमे सामन रखे हुए दिखाई दे रहा है।

जिसके ऊपर एक पानी की टंकी रखी हुई दिखाई दे रही है। आस-पास बॉउंड्री दिखाई दे रही है।

इस फोटो मे नदी के फोटो को दर्शाया गया है। नदी में पानी काफी गहरा दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। जो एक बहुत बड़ा बिल्डिंग के नीचे दिखाई दे रहा है।

इनके आसपास बहुत सारे मशीन रखे हुए दिखाई दे रहे हैं ।

सामने की तरफ कैरेट लगी हुई दिखाई दे रही है कैरेट रेड कलर का दिखाई दे रहा है चैयर दिखाई दे रही है स्टूल दिखाई दे रही है।

ब्लू कलर का कोर्ट पहना हुआ है। सामने की तरफ शर्ट दिखाई दे रहे है जो की कुछ करते हुए नजर आ रहे मशीन में--

पीछे की तरफ परदे दिखाई दे रहे है। तो कुछ ब्लू कलर की दिखाई दे रहे है।

वाइट वाला सीमेंट लगा दिखाई दे रहा है सामने की तरफ जो शटर दिख रही है शटर का लाइट ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है।

यहाँ बहुत सारी मशीने रखी हुई दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है।

उ कठु नज़र आ रहे जो की पत्थर पे बैठे नज़र आ रहा है।

जिसके ऊपर माता जी की तस्वीर बनी हुई दिखाई दे रही नीचे की तरफ काय दिखाई दे रहे काउंटर दिखाई दे रहे।

लोग स्कूटी पर अपना पेट्रोल डलवाते हुए नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में एक बड़ी नदी के फोटो को दर्शाया गया है। नदी काफी बड़ी दिखाई दे रही और काफी दूर तक दिखाई दे रही है।

स्टोर के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा जिसका कलर दिखाई दे रहा चॉकलेटी कलर का। नीचे की तरफ काउंटर पर एक लड़का बैठा हुआ नज़र आ रहा जिसने रेड कलर की कपड़े पेहने हुए है।

एक ठेला दिखाई दे रहा है जिस पर भगवान की फोटो नज़र आ रही है जिसमे ब्लू कलर के लिखे हुए है।